जिसमें हरी हरी घास खड़ी है।

उनके चेहरे छुपे हैं और पीछे एक गेट लगा है।

ये एक बहोत बड़ा झरना है।

और यहां एक काउंटर है और दो आदमी बैठे हैं।

ये एक बहुत बड़ा हॉल है।

और पंखे लगे है लाइट भी लगी है।

और यहां एक वाइट कलर का बोर्ड लगा है।

इनके अंदर कुछ लाइट का सामान रखा है।

यहां कुछ स्कूल की तरह बना है।

आदमी हैं और कुछ हरे भारे पेड़ खड़े हैं।

इनमे कुछ झरना बह रहा है।

यह एक बहुत बड़ा विद्यालय है।

जिसमें लोहे का गेट लगा है।